अच्छा रहता है जैसे कि अपनी स्वास्थ बना सकते हैं। बॉडी बना सकते हैं। जिम काफी अच्छा है आज-कल के लोगो के लिए। आज-कल के दौर --

ऐसी डेकोरेशन हम पार्टी फंक्शन बर्थडे में करवाते हैं |

उदा पे गउ पालन होता है जहां पे इनको खाना-पीना सब दिया जाता है औ इनकी सुरक्षा भी की जाती है।

ट्रैक्टर किसानों के लिए काफी उपयोगी है जिससे कि किसान जल्दी अपना काम ख़तम कर सकते हैं।